इंडिपेंडेंस डे के तीन कलर्स के बैलून लगे हुए हैं।

ये पिक्चर एक डॉल्स की दुकान की है।

और कुछ स्पोर्ट्स के --

और यह सारे सामान अलमीरा में सिक्योर है।

ये पिक्चर एक बड़े से पार्क की है।

और इसमें एक पौधा भी दिखाई पड़ रहा है।

पीछे की साइड एक माउंटेन भी है।

इसमें कुछ पेड़-पौधे भी --

और इसमें काफी सारे पेड़ पौधे भी हैं।

इसमें कुछ ट्यूबलाइट्स भी लगी हुई है।

जिसका कलर वाइट और रेड है इसके बाहर एक कार भी खड़ी है।

ट्यूबलाइट भी नजर आ रहा है।

इसमें कुछ पेड़-पौधे भी दिख रहे हैं।

और मौसम काफी सुहाना है।

और यह नदी काफी गहरा है।

दूसरे छोड़ पे किनारा भी दिख रहा है।

यह पिक्चर योग केंद्र के ऑफिस की है।

ये पिक्चर एक पार्क का है।

जिसमें एक झूला लगा हुआ है।

इसमें काफी सारे पेड़-पौधे दिख रहे हैं।

और नीचे मिट्टी भी नजर आ रही है।

ये पिक्चर एक बड़े से बिल्डिंग की है।

इसके बाहर काफी सारे वाहन खड़े है।

इसमें हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग भी नजर आ रहा है।

इसमें कुछ पौधे भी नजर आ रहे हैं।

इसमें कुछ टॉइस भी दिख रहे हैं।

इसमें एक बड़ा सा सिग्नल टावर भी है।

इसकी दीवाल का कलर ग्रीन है।

और इसमें काफी सारे पेड़-पौधे भी नजर आ रहे हैं।

और पीछे एक काफी बड़ी बिल्डिंग भी है।

और पीछे की साइड कुछ वाहन भी हैं।

जिसका नाम बीडी वर्ल्ड स्कूल है।

इसमें काफी सारे बच्चे दिख रहे हैं।

और कुछ ने फौजी के ड्रेस में हैं।

इसके चारों तरफ काफी सारे घर भी --

नीचे की साइड घास उगी हुई है।

और एक बड़ा सा पोस्टर भी लगा हुआ है।

यह पिक्चर एक काफी बड़े घर की है।

जिसके बाहर काफी सारी महिलाएं --

घास और कुछ पौधे उगे हुए हैं।

न्यू महावीर टवाइजेस है।

और इसमें कुछ व्यक्ति भी --

यह पिक्चर एक जिम की है।

जिसके ऊपर की साइड वाइट कलर से पैन्टेड है।

लकड़ी से बने हुई काफी सारे लोगों को --

यह पिक्चर एक चर्च का है।

और चर्च वाइट कलर का है।

ये पिक्चर हैं एक बुक स्टोर की है इसमें काफी सारे की किताबें मिल रही है।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

ये पिक्चर एक ग्रोसरी स्टोर की है।

इसमें काफी सारे खाने-पीने --

के सामान मिल रहे हैं।

यह पिक्चर एक नर्सरी गार्डन का है।

एक वाइट कलर की दीवार भी दिखाई पड़ रही है।

यह पिक्चर एक मेल और फीमेल चेंजिंग रूम का है।

कुछ व्यक्ति और कुछ महिला दिख रही है।

इसके पीछे की दीवार का कलर --

और ऊपर कुछ लाइट्स हैं।

जिसके चारों तरफ ग्रीन कलर की बाउंड्री से घेरा गया है।

यह पिक्चर एक बले से प्लेग्राउंड का है।

इसमें कुछ पेड़ भी नजर आ रहे है।

यह पिक्चर एक बड़े से पार्क का है।

जिसके नीचे घास सूखी हुई है।

कुछ बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं।

ऊपर की साइड कुछ लाइट जल रही है और नीचे --

नीचे की साइड वुडेन टाइस भी है।